सभी पौधे बहुत हरे हैं।

इसमें बहुत से साधन खड़े हुए हैं।

बगल में एक महात्मा बुद्ध की तस्वीर है।

इस तस्वीर में आसमान आधा लाल व आधा नीला दिखाई दे रहा है।

कुछ मोटरसाइकिलो का रंग काला अथवा कुछ मोटरसाइकिलो का रंग लाल है।

यह तस्वीर एक संयुक्त परिवार की है।

ईमारत के मंजिल तीन है। ईमारत के सामने एक पेड़ है।

जिसमें से कुछ लड़कियाँ अथवा कुछ लड़के हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है।